यह एक चित्र है। हमें यहां पर एक लोहे की आलमारी सी दिखाई दे रही है।

टीचर्स भी है जिसने कुर्ती पजामी पहन रखी है।

जमीन पर कुछ तार जैसा पड़ा हुआ है।

सामने हमें दो लोहे की ग्रिल्स भी दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है। हमें अ इसमें अनेक प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं।

जिसमें से एक ने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी हु है और एक ने ग्रीन कलर की।

यह एक चित्र है हमें यहां पर कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है यहां पर दातों की दुकान दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है यहां पर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है अग्रवाल क्लासेस ।

पास में तीन लकड़ी के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसने पीले कलर का फ्रॉक पहन रखा है।

उसके पास एक कुछ कागज का भी है पीछे बहुत से कपड़े रखे हुए हैं।

पास में रेता भी पड़ा हुआ है और कुछ इंटे भी पड़ी हुई है।

उस दीवार पर काफी अच्छा डिजाइन बना हुआ है ऊपर एक पंखा है।

और साइड में एक नेवी ब्लू कलर का और व्हाइट कलर का भी बॉक्स है।

ऊपर ब्लैक कलर की उस पर लिखा हुआ है वाइट से ट्रेड ।

उस पर एक आदमी बना हुआ है जिस पर लिखा है विदेसा।

जिस पर एक हरे कलर की चादर पड़ी हुई है और ऊपर लाइट भी है।

ऊपर ब्लू कलर ब्लू कलर में लिखा हुआ है ब्लू दा--